एक सड़क दिख रहा है पीछे से एक दूकान दिख रहा है और बहुत सारा हरा पत्ता दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

यहा पे एक ब्रिज दिख रा हे --

स्टेचू का भी बैनर दिख रहा है दो आदमी बैठा हुआ है कुछ चेयर है ढका हुआ है।

छोटा सा मैदान है इसके ऊपर टेनिस का कोर्ट है।

यहां पे एक बगीचा दिख रहा है इसके नेट का अंदर एक छोटा सा टॉवर दिख रहा है और ऊपर से तार दिख रहा है।

यहां पे एक मंदिर दिख रहा है मंदिर के सामने दीवाल में एक घड़ी दिख रहा है मंदिर देवी का मूर्ति है कुछ पूजा का सामना है बहुत सुन्दर है।

घास में दिख रहा है कुछ पेड़ दिख रहा है एक बैठने का जगह है।